और कुछ सब्जियां रखी हुई दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर की है और कुछ बर्तने रखे हुए हैं।

जो ब्लू कलर के है जिसमें एस-बी-आई और साइड में ई कॉर्नर लिखा हुआ है।

और बहुत सारे और भी गमले दिखाई दे रहे हैं जिसमें पौधे लगे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।